गुलाब का पत्ते भी दिख रही है जिनका कलर ग्रीन है।

ये तस्वीर एक छोटी सी दुकान की है।

घर के आस पास बहोत सारे घास है और आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिख रही है।

जमीन पर कुछ ड्रम भी दिख रही है।

दीवारों के बीच एक गेट भी दिख रहा है।

यह तस्वीर एक शोभा यात्रा या धार्मिक का लग रहा है।

पीछे घर भी दिख रहा है।

मुझे कुछ तीन चार लोग भी दिख रही है।

मुझे दो ट्रेडमिल दिख रही है।

अंदर बहोत सारे बल्ब भी दिख रही है जो जल रही है।

य तस्वीर में मुझे छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूल दिख रहे हैं जिनका कलर येलो ऑरेंज है।

पेड़ भी दिख रही है।

पीछे बहोत सारे बच्चों के कपड़े रखे गए हैं।

जहां पर वुडेन सोफा और चेयर रखे गए हैं।

और व्हाइट टाइल्स से है।

की जमीन गली और कीचड़ भरी लग रही है।

यह तस्वीर एक रिसोर्ट का हो सकता है।

पीछे टाइल्स लगे हुए हैं।

बिसलेरी एंड थम्स अप बोतल भी दिख रही है।

कुछ दूर समुद्र के बीच एक लाइट हाउस भी दिख रही है।

एक काला कलर का वायर भी दिख रहा है।

यह तस्वीर एक बड़ी सी सड़क या ब्रिज को दिखाती है जहां पर बहुत सारे व्हीकल हैं जैसे की गाड़ी स्कूटी बाइक ।

एक व्यक्ति एक पाइप लिए खड़ा है ऊपर।